आ दिखाई दे रहा है सामने बहुत सारी कैरेट रखी है जोकि फिरोजी और लाल कलर की बहुत सारे बॉक्स रखे दिखाई दे रहे है कुछ बैनर लगे हुए हैं।

एक जंगल दिखाई दे रहा है जिसमें बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए हैं और चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं। कुछ हरे-भरे हैं और कुछ सूखी लड़कियाँ --